ये जो पिक्चर है इसमें एक चट्टान दिखाई दे रहा है पद्धड़ का याने की हिल का इसमें पत्थर से बना हुआ है।

और गार्डन मे एक जो है आ महिला जो है पौधों इस मे पानी दे रही है पड़े पौधों में| और यह जिस में कॉर्फूल भी दिख रहे है चारो तरफ हरियाली भी है| पीछे वाइट कलर का बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर में ये भी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग जैसे की इसमें आ का बाहेर का पिक्चर है इसमें।

यह जो पिच्चर है इसमें बहुत सारे बच्चे आर्टवर्क कर रहे है| वो दिखाई दे रहे है| उनके सामने एक जैसा की छोटा छोटा डेस्क बनाया गया है उनके ऊपर रख के वो लोग रख के आर्ट वर्क भी कर रहे है।

यह जो फोटो है इस पिक्चर में यानि की फोटो में दो बच्चे को दिखाया जा रहा है| जो बच्चे है जो खेल रहे है| यहाँ पे जो लोहे का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।

बना हुआ है और आगे भी बहुत सारे छोटे-छोटे डेस्क बने हुए है और इसमें लाइटे जल रहे है और कुछ पंखे भी है| और ये जो है ये एक ऑफिस है कुछ लोग भी बैठे हुए है दूर पे|

ये जो सामने पिच्चर दिखाई दे रहा है इसमें एक बिल्डिंग बना हुआ है| बिल्डिंग में बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए है| ऊपर में एक रेड कलर का पोस्टर्स बना हुआ है।